ब्रिज को सपोर्ट किये हुई है यहां पे चारो और ब्रिज के निचे पानी पानी दिख रहा है यहाँ पे सेवाल भी दिख रहा है थोड़ा छोटा छोटा सेवाल भी दिख रहा है थोड़ा ब्रिज के ठेके --

और ये नाव बहुत दूर में दिख रही है देखने से एक पेंटिंग की तरह लग रहा है बहुत अच्छा पेंटिंग लग रहा है देखने--

यहाँ केवल बिजली के खम्बे भी दिख रहे है जो जिसमे केवल बिजली के तार दिख रहे है इसके बगल में बहुत मंजिला फ्लैट भी दिख रहा है।

चर्च के जो दिवार हैवो लाल रंग मे पेंट किया गया है।

ये चर्च मे चार दरवाजे भी दिख रहे हे च चर्च और इसके बगल मे एक खिड़की भी खुला हुआ दिख रहा है।

चर्च के ठीक सामने गोल गोल आकार मे कोरोना प्रोटेक्शन के लिए गोल गोल आकार दिया गया है ताकि लोग डिस्टन्स बना कर पूजा पाठ कर सके।

ठीक अगर बगल में बहुत सारा हरे रंग का पेड़ चारों तरफ से गिरा हुआ दिख रहा है।